और एक गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है।

और हॉस्पिटल के बाहर में डॉक्टर के पल्लवी भी लिखा हुआ है एक पोस्टर पे।

यहां पे एक एल_इ_डी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और साइड में बहुत सारा झाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में और एक नाव चलती हुई दिख रहे है।

और एक आदमी फोटो खिंचवा रहा है और एक आदमी फोटो ले रहा है।

उसके बगल में बहुत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहे हैंबड़े बड़े चट्टान भी हैं।

यहाँ पे एक औरत तिरंगा लहरा रहा है।

पोल पीला कलर का दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा शीशा दिख रहा है और एक घड़ी भी दिख रहा है।

यह एक होटल का दृश्य है।

यह ए ए इलेट्रॉनी का दुकान है।

यह एक मछली बाज़ार है जहाँ बहुत सारा मछली रखा हुआ है।

एक औरत किसी से फोन पे बात करते दिख रहे हैं।

यहां पे एक लाइन दिखाई दे रहा है।

बैंक के सामने बहुत सारे लेडिस और जेंट्स खड़े हुए और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

तीन आदमी चेयर पे बैठे हुए हैं।

और एक आदमी खड़े हैं।